यहाँ पे एक ऑटो खड़ा हुआ हैं जो पीले कलर का है काले कलर का है ऑरेंज कलर की लाइट लगी हुई है दोनों साइड कलरफुल वाली झालर टंगी हुई है।

मकान दिखाई दे रहे है दूर पे और बड़े-बड़े पेड़ भी लगे हुए है ऑटो में बोहोत सारा सामान रखा हुआ है एक सामने यहाँ पे टायर दिखाई दे रहा है ब --

पेड़ यहाँ पे कुछ सूख चुके हैं जिनकी पत्तियाँ काफी नीचे गिरी हुई हैं और बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे सामने कुछ इंसान दिखाई दे रहे हैं।

लडकों की एंड वो सफ़ेद कलर की है लडकों की एंड वो सफ़ेद कलर की है कुछ ने हाथ जोड़े हुए हैं फ्लावर्स की डिजाईन बनी हुई है यहाँ पर आसपास की दीवारों पे कुछ ने हाथ जोड़े हुए हैं फ्लावर्स की डिजाईन बनी हुई है यहाँ पर आसपास की दीवारों पे

और सामने लाइट जल रही है सफेद कलर की कुर्सियाँ रखी है कुछ इंसान जा रहे है जिनके हाथ में बोरी है और यहाँ सामने सफेद और लाल टाइल्स लगी हुई है बाइक रखी हुई है यहाँ पे काले कलर --

हाँ ये एक जिम है जहां पे एक्ससाइज करने वाली बहुत सारी मशीने रखी हुई हैं।